यहाँ एक परचून की दुकान है जहाँ में डार्क फैंटेसी खड़ी है फरी है। फोन-पे टंगों है। बड़ो अच्छों परचूनी दुकान है --

या में सरिये या में लिंटर भर रो है | या में सरिये फरिये भरी है | ये मजुरा काम कर रहे हैं और एक मिस्त्री है | यहां अच्छो काम कर रहे है आपो करवाइयो।